एक दरवाजा टाइप का बना दिया गया है रेड कलर का ब्लैक कलर के उसमें दरवाजे हैं बहो--

पोज़ दिखाए जा रहे हैं साइड में पीछे में भी बहोत बड़े बड़े पेड़ वेड भी दिखाई जा--

काफी बुक्स और पेन रख दिए गए हैं चारों ओर तो स्टील के ग्रिल टाइप के दे दिए गए कांच लगा दिए गए हैं ऊपर झूमर पे लाइट्स हैं बहोत सारे आदमी है सीलिंग फैन एल_इ_डी लाइट --

एक बहोत बड़ा सा हॉल टाइप का दिखा दिया गया है जिसमें लोहे के चेयर वेयर्स लगा दिए गए हैं एक आदमी है जो की खड़ा है ओ--

वह सीट हैं बैठने के लिए काफी एक आदमी को दिखाया जा रहा हैं जो की केबिन के अंदर पर हैं वहाँ पे कुछ लिखा गया हैं नीचे पे मार्बल लगा--

और बहोत सारी साइकिल्स रखी गई है बाइक खड़े हैं बाहर पर कुछ सामान उमान रखे गए है स्टील विस्टिल के और लोहे--

इसे लोहे के चारों ओर से घेर दिया गया है बीच में कुछ बॉल वोल हैं एक डॉगी हैं डॉगी का चिन्ह बना दिया गया बहुत सारे कुछ--

एक बगुला को दिखाया गया है जोकि खड़ा है एक पैर उठा करके वो ब्लैक कलर पर है उसके चोंच येलो है पैर भी येलो दिखाई जा र--

एक गैरेज टाइप का दिखाया गया है जिस पर एक आदमी है जो कि बोर्ड पे कुछ कर रहा है एक बड़ा सा लोहा का पोल दिया गया तार वार है काफी सारे।

एक आदमी जो ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए है ऊपर पे सीलिंग फैन है और एल्बेस्टर लगाया गया है लोहे के ग्रील वृल दे दिए गए हैं बहुत सारे कुछ मशीन वसीन भी दिखाए जा रहे है बहुत--

टेबल है टेबल पर कुछ सामान ओमान रखे गए हैं चीयर है एक आदमी है जो कमर में हाथ देकर के खड़ा है और बाहर पे भी कुछ आदमी दिखाई--

कलर रंग बिरंगे हैं पिंक में वाइट में ब्लैक में आसमानी में धूप उप --

मूर्ति से नीचे पे मार्बल है और ब्लैक ब्लैक टाइप के बॉर्डर दे दिए गए हैं पिलर्स दे दिए गए हैं पिलर्स में भी कलर वलर कर दिए गए --

एक घर टाइप का दिखाया जा रहा है होटल टाइप का जिसमें एक बहुत बड़ा सा गमला है गमलो में साइड में दो गमले रखे गए हैं उसमें पौधे वोधे लगा दिए गए हैं।